और बिल्डिंग के सामने पत्थर का डंगा दिया गया है एक बहोत बड़ी दीबार बनाई गई है।

जो है बैंचेस लगे हुए है लोहे के बैठने के लिए।

जो की अभी स्कूल आ रही है बच्चों को लेके और यहां पर पार्किंग लोट में बहोत सारी गाड़ियां भी मुझे दिख रही है और बाइक --

प्लास्टिक का कंकाल बनाया गया है और ह्यूमन बॉडी की तरह इसको पूरी दिखाया गया है कि कौन सा पार्ट कहां पर होता है।

और एक लेडी मुझे दिख रही है लड़की जो अभी चल रही है।

और स्कॉर्पियो जैसी गाड़ियां यहां पर लगी हुई है। अल्टो मारुति सुजुकी --

मुझे एक लोहे का बेरियर दिख रहा है।

और यहाँ पर अलमारियां बनाई गई हैं समान रखने के लिए ड्रॉर्स बनाए गए हैं लकड़ी--

और जिनमें से फैमिली में एक बच्चा मुझे दिख रहा है।

और एक पंजाबी सरदार जी बैठे हुए हैं खाना खाने के लिए--

और एक जो है बैग है ए--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

और इसके सामने में ही एक--

चिल का पेड़ है ये और भी बहोत सारे पेड़ लगे हुए हैं जंगल है यहां से।

और दुकानें भी यहां से इस बिल्डिंग में बहुत सारी दुकानें भी हैं।

और जैसे कि यहां पर फूड बाजार है यहां पर खाना खा सकते हैं।

और भी कुछ पार्क के समान है।

और इसके सामने बॉस्केट कोर्ट है।